की ओर बैठ कर के कई सारे देख रहे है इस बहोत ही एक रूम में जो बहोत ही सजा हुआ है जिसमे डेग वेग और टीवी लगा हुआ --

इस चित्र में बहुत ही सुंदर आकर्षित करने वाला दृश्य है जिसमे झरना के नीचे कुछ लोग नहा रहे हैं बाहर भी बैठे हुए हैं।

ये सारे कुर्सियां खिड़की और लाइट डेकोरेशन भी यहाँ पर और गणेश भगवान जी की फोटो लगा हुआ है ।

ओ बनेज भीड़ हे रोड इ सिटी रोड हवे ती आटो - वाटो और बाइक -वाइक मा आदमी आत- जात हे पनेज कन बिजली तार खंबा ती लगे -वगे हे बड़े- बड़े बिल्डिंग दिखत हे।

जो और भी बहुत सुंदर लगत थे और एमा कई प्रकार के कई ठो मंदिर जुड़े हुए है अउ एमा लोग आप जात थे।

ए चित्र म बहुत ही सुंदर एक बहुत बड़े हॉल बिल्डिंग दिखाए देवत हे जेमे तीन चार लोग--